चित्र एक बाजार की है और इसमें काफी सारे फल दिख रहे हैं कई तरह के फल रखे हुए हैं|

और इसमें कई सारी मशीनें हैं और इनके ब्लेड तेज़ दिख रहे हैं।

एक दुकान की है और इसमें कई तरह के परदे लगे हुए हैं।

--एक ए_टी_एम की है और बाहर कुछ मोटर साइकिल और एक कार ठहरी हुई है।

ये चित्र एक मेले की है और इसमें कई महिलाएं और पुरुष ठहरे हुए हैं पीछे की ओर बड़ा सा चक्कर लगा हुआ है जिसमें कई लाइट लगी हुई है।

दो आदमी एक सामान को ले कर जा रहे है और एक आदमी सफेद शर्ट पहन अपने फ़ोन में देख रहा--